यहाँ पर पुतले बने हुए दिख रही हैं यहाँ पर अच्छी ध्यान से पुतले बनाए गए हैं कुछ लोगों के पुतले बनाए गए हैं मछली की भी पुतले बनाए गए हैं।

यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच।